तस्वीर में हमें एक सड़क नजर आ रही हैं।

तस्वीर में हम एक कोचिंग क्लास लगते हुए देख सकते हैं।

यहां पर कई लोग दूर दूर से घुमने आते हैं।

स्टेज पर स्थानीय नृत्य होता हुआ नजर आ रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है किसी शुभ मुहूर्त के अवसर पर पार्टी हो रही है।

मिलता है कई सारे कलम नजर आ रहे हैं।

और एक सुहावनी दोपहर नजर आ रही है।